एमएक पोस्टर लगा हुआ हैंजी_बी कर्रर इंस्टूट लिखा हुआ हैंयहां पर मेडिकल इनजीनीरींग एस_एस_टी पु कि कोचिंग वागेरा होती हैं।

क्लास आठवी नवी दसवीं सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है कुछ बच्चों की रेंक भी दिखाई दे रही है पीछे की ओर में वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।